ग्रीन और पिंक है और यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है। जिसकी दीवार का कलर व्हाइट पिंक है। यहाँ पे बहोत सारी सीढियाँ दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग खड़े हुए हैं।

पे(पर) बोर्ड भी लगा हुआ है। बिजली का खंभा दिखाई दे रहा है और बिजली की तार भी दिखाई दे रही है। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही है और कुछ गमले वगैरा रखे हुए है। पर्दे भी लगे हुए हैं। इनका कलर व्हाइट और ब्लू है।

कुछ कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं। बल्ब भी जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ परदे वगैरह लगे हुए हैं।

यहाँ पे बहोत सारी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है। जिनकी दिवाल (दीवार) का कलर व्हाइट है और येलो है।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

यहाँ पे बहोत सारी सीढ़िया बनी हुई हैं और बाइक भी रखी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ पोस्टर वगैरह भी लगी हुयी हैं।